यहां बहोत सारे इस कंपनी में आदमी खड़े है।

दस पन द अअ सात आठ डब्बे ही डब्बे रखे हुए हैं और एक टी_वी भी लगा हुआ है।

यह सैयद बाबा दिखाई दे रहा है पीछे सरसों भी बो रखी है।

धर्मशाला दिखाई दे रही है बड़े बड़े पेड़ भी नजर--

यह केमिस्टर की दुकान दिखाई दे रही है।

लाल रंग का गलीचा भी बिछा हुआ है बड़े बड़े--

यहां बच्चे चारट पे पेंटिंग कर रहे हैं। चार पांच बच्चे--

और साबुन कपड़े धोने का सरफ--

बैठे हैं जैसे यहां शादी पार्टी हो रही हो बच्चे भी --

बूढ़े भी जवान भी सब बैठे हुए हैं। बहोत सुंदर सा नजारा देख रहा है।

यहां बहोत सुंदर वाटिका सजी हुई है यहां शादी पार्टी हो रही है।